यहां उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं काफी सारे।

लाइट्स लगी हुईं है काफी सारी कैमरे लगे हुए हैं।